और यहां पे नीचे माइका लगा है चॉकलेटी कलर का और--

और नीचे फर्श बढ़िया जो कि टाइल बहुत अच्छे लगे हैं व्हाइट और ब्लैक कलर के हल्के।

यहां पे स्कूल के बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं कुछ घूम रहे हैं कुछ पढ़ाई कर रहे हैं।

और नीचे सिल्वर कलर का छोटा सा गेट है।

दीवारें है ब्लैक कलर के दो पंखे है एक माइक वाला स्टैंड है।

और एक सिंक है नीचे टाइल हैं व्हाइट कलर के।

यह एक चाय की दुकान है और जहां पे चाय कॉफी मिलती है और--

पीछे एक फ्रिज है मैरून कलर की और एक सी_सी_टी_वी कैमरा लगा है सफेद कलर का।

यहां पे एक बड़ी सी टंकी है जो की येलो कलर के पिलर है उसमें।

एक परचून की दुकान हैं एक बड़ा सा पेड है।

कांच के गिलास हैं और यहां पे प्लेट भी है कांच की।

यहाँ पे दो कुर्सी पड़ी है ब्लैक कलर की एक गमला है छोटा सा जिसमें खजूर का पेड़ है और यहां पे बहुत छोटे छोटे बॉल है वाइट कलर के।

व्हाइट कलर की भी ब बैलून है यहां पे वाइट कलर के पर्दे भी है।

यहां पे एक नल है सिल्वर कलर का और बहुत सारी बोरी हैं पीले कलर की वाइट कलर की भी बोरी हैं।

यहां पे एक बाल्टी है छोटी सी सफेद कलर की उसके बगल में एक झोला है येलो कलर का।

गुब्बारे हैं यहां पे ब्लैक कलर का एक बैनर लगा है।

यहां पर एक ब्लैक कलर की बाइक खड़ी है।

यह एक ब्लू कलर का ट्रैक्टर है जिसमें ब्लैक कलर के टायर हैं छोटे बड़े।

यहां पे बहुत सारे सोफे हैं और बहुत सारे चॉकलेटी कलर के सोफे हैं।

यहां पे कुछ कार्टून बॉक्स रखे हुए हैं जिनके अंदर कपड़े होते हैं।

इनमें कलर है हरा ब्लैक रेड चॉकलेटी --

ये ग्रीन कलर की एक मशीन है।

बाइक खड़ी है ब्लैक कलर की। यहां पे एक स्कूटी भी है व्हाइट कलर की।